यह एक खेल कूद का मैदान है।

यह एक ऑफिस का रिसेप्शनिस्ट काउंटर है जिसमें एक रिसेप्शनिस्ट खड़ा हुआ--

एक रिसेप्शनिस्ट काउंटर पर मे आई हेल्प यू लिखा हुआ है।

की ये गैलरी है और बगल में कई सारे दुकाने--

बगल में एक ज्वेलरी की दुकान है वोयला करके और जिसमें की सेवंटी परसेंट ऑफ भी दिख रहा है।

और एक कस्टमर ये सामान खरीद रहा है।

बगल दाएं और बाएं दोनों साइड में गेट हैं।

जो कि गेट नंबर चार और पांच है जिसमें कि आपकी यात्रा मंगलमय हो ऐसा लिखा हुआ है।

और उसके पीछे एक बिल्डिंग है।

कमरे की ओर एक लाल कलर का बड़ा सा गेंद रखा हुआ है।

यह एक स्कूल है जिसका नाम द नॉलेज स्कूल है।

सेल्फी ले रहा हैं और एक व्यक्ति गेट के सामने से गुजर रहा हैं।

कुछ फूलों की मालाएं रखी हुई हैं।

बगल में कॉफी बिट्स का एक स्टैंड है और उसके सामने चोको अह चिप्स कूकीस एह की चार बोतले रखी हुई हैं।

इंडियन पोस्ट की ए_टी_एम के साथ है और उसके सामने एक व्यक्ति बाइक में खड़ा है।

बाइक खड़ी हुई है एक व्यक्ति उसके सामने से जा रहा है।

ए पोस्ट की ये जो अ ए ए_टी_एम है ये रेड कलर का --

नीचे कटाव पर कुछ लोग चद्दर वगैरह लगा कर के निवास कर रहे हैं।

दाहिनी ओर कुछ फोर व्हीलर्स खड़ी हुई है।

ये गुब्बारे लगे हुए हैं जिनमें की बल्ब लगे हुए हैं।

जो कि सबसे पहले शिवम का मिठाई शॉप एंड रेस्टोरेंट की दुकान है उसके बाद दुकान है।

इसके नीचे से रोड गई हुई है उस रोड से वाहन गुजर रहे हैं।

कई सारे लोग पैदल जा रहे हैं। एक रिक्शा खुला है। उसके बगल में एक और बिल्डिंग बनी हुई है।

यह एक मेट्रो स्टेशन है जिसके दाएं ओर एक मेट्रो खड़ी हुई है।

स्टेशन है उसके ऊपर एक घड़ी बनी हुई है जो कि समय को बता रही है।

यह एक मॉल के आंगन का दृश्य है जिसमें सभी तलों को दिखाया गया है।

यह एस_सी_एम का शेरवुड केंपस है जो कि गोल्डन कलर का है।

बाउंड्री पर अह हरी बेल हैं उसके--

लिखने में लगी हुई है जिसके सामने कुछ रखी हुई है।

वी लगी हुई है और सामने की ओर वॉशरूम --